इस इमेज मे मुझे एक ऑफिस दिख रहा है ऑफिस की दरवाजे खिड़कियाँ ब्लू कलर की है।

इस इमेज में मुझे तीन गोल कलर की सीढ़ियाँ नजर आ रही है सीढ़ियों का कलर रेड है वाइट है ग्रीन है उसके सामने मुझे एक ऑफिस नज़र आ रहा है।

चर्च के डोर पे बहुत सारे बैलून्स लगे हुए है बैलून्स ब्लु और वाइट कलर के है।

उसके हाथ मे रेड कलर का एक मोबाइल है उसके पीछे एक सलून की दुकानवाला दिख रहा है जिसके हाथ मे एक ब्लैक कलर का ड्रायर है।

इमेज मे एक छोटा सा गार्डन दिख रहा है गार्डन से हरा-भरा है उसमे एक बोर्ड लगा है ब्राउन कलर का उसपे कुछ सिम्बल दिए हुए है और लिखा गया उसके सामने में --

इस इमेज में एक शॉप दिख रही है जो कि कपड़ों की है विंडो के सामने मे एक रॉड लगी हुई है रॉड में बहुत सारे हैंगर लटके हुए है जो की वाइट कलर के पुतले है लेडीज के कपड़े है उसमें ब्लैक कलर का एक सूट दिख रहा है।